उसमें एक ड्रम रखा हुआ है यहां एक आदमी भी बैठा हुआ है।

दो लेडीजे जो आपस में बात कर रहे हैं यहां पर लाइटें लगी हुई हैं।

एक सड़क जैसी गई है जहां पर बहुत से पेड़ पौधे हैं यहां पर कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं एक रास्ता और ग--

साइड ब ब्लू कलर से है यहां पर बोहोत से पेड़-पौधे हैं।

यह एक शॉप लग रही है जहां पर बहुत से बाटले रखें हुये हैं।

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। यहां पे बोहोत से तार निकले हुए हैं।

यहां पर यहां पे एक झोला रखा हुआ है यहां पर दो बोतले रखी हुई हैं यहां पर कुछ लेडिजे खड़ी हुई हैं।

यह एक बैंक है यहां शाखा भी है।

जहां पर दो आदमी एक आदमी अंदर है एक आदमी बाहर है।